ये यहां पे देख सकते हो।

ये यहां पे कपड़ा वगैरह देख रहा है।

इसने पीले रंग के कपड़े पहेन रखे हैं।

ये यहां पे देख सकते हो--

डी_जे दिख रहे हैं यहां पे देख सकते हो।